इस दृश्य के अंदर बहुत बड़ा भवन नजर आ रहा है।

इस दृश्य के अंदर एक बाइक खड़ी है कुछ पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं।

इस दर्शी के अंदर बहुत तस्वीर भी दिखाई दे रही----

दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ें भी दिखाई दे रही है।